कपड़ा लपेटे हुए है और आसनित है सामने इक व्यक्ति जो पूजा करता हुआ दिखाई दे रहे है अगल बगल कुछ विशेष आकृतीया उभारी गयी है।

इसमें लगे हुए है। ऑफिस के सामने इक पेड़ है।

टंकी है और एक एम-टी-एस एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक गुफा जिसके आस पास कुछ गाड़िया खड़ी हुई है।

बना हुआ है कुछ पेड़ पौधे सूखे हुए है कुछ पौधो मे पत्ते है।

एक पुराना भवन जो टूटा फूटा है अंदर एक मूर्ति है भवन के सामने दो सीढ़िया है सीडी के नीचे एक है।

मूर्ति के पीछे दीवार मे दो रोशनदान है जिसमे धन आकृति लगी हुई है।

सीढ़ी ऊपर की और गयी हुई है जिसमे ऊपर मे है ऊपर मे एक व्यक्ति खड़े हुआ है जो बैग लटकाया हुआ है।

एक गुफा जो पूरे पहाड़ के निचो नीच है पहाड़ के आस पास कुछ बड़े बड़े चट्टान है। पहाड़ के सामने छोटे बड़े पेड़ पौधे और घास की झाडिया है।